जो खुला हुआ है यहाँ पर स्क्रीन टू लिखा हुआ है दीवार पे जो भूरे रंग की हैं।

राधे टेक्सटाइल लिखा हुआ है यहाँ पे दो शटर है दोनों शटर खुले हुए हैं।

सामने कुछ सोफे दिख रहै है मुझे जो अ स्किन रंग के है सामने दो स्टेबली भी रख--

सामने एक बोर्ड देख पा रहा हूँ मैं बस स्टैंड टर्मिनल्स का जो काले रंग का है।

इसके सामने एक अ टेबल रखी है जिसपर भगोना रखा हुआ है और चाय की पत्ती रखी--

यहाँ की जमीन जो है वो कुछ भूरे रंग की है यहाँ पर एक कार खड़ी है स्लेटी रंग की --

जिस पर दो पल पराठे रखे हुए है जो पिले रंग के है और इसपे लाल स्पाउस पड़े हुए है।

सामने बड़ा सा पत्थर है जो काला भूरा और नारंगी दिख रहा है और हरा भी चमक रहा है जहाँ से पानी गिर रहा है झरने की तरह --

जो सफ़ेद रंग का चमक रहा है आसमान का रंग नीला है और थोड़े से बादल है सफ़ेद रंग के --

दुकान में काउंटर रखा हुआ है जिस पर फ़ोन पे का पोस्टर लगा है।

निचे जो है एक काउंटर रखा है शीशे का जिसके ऊपर कुछ डिब्बे रखे हुए है पास में एयरटेल फोर जी का बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर अ लिखा हुआ है माँ नर्मदा मंदिर यहाँ पर सीढियाँ हैं।

जो सिलेपि रंग की या भूरे रंग की यहाँ की फर्श जो है --

ऊपर लड्डू रखे हुए है निचे अंगूरी लड्डू रखे हुए है निचे बूंदी राखी हुई है पास में डीप_फ्रीजर लाल रंग का जिसमे स्कूपस लिखा हुआ है।

यहाँ पर कई सारी टेबले और चेयर रखी हुई है सामने टेबल पर एक लड़का बैठा है पिली शर्ट टी_शर्ट पहन के चस्मा लगाया हुआ है ।

कुछ विकर्स लगे हुए है और कुछ झंडे भी लगे है यहाँ पे--

सामने मुझे दुकान रही है जिसका शटर ओपन है यहाँ पर इम्पीरियल प्रीमियम फ्रूट्स दिख रहा है।

बगीचों में चारो तरफ जो हैं वो फूल लगे हुए है ईंटो की मेड़ बनायीं गयी है फूल पीले रंग के है जिसके पास में पौधे भी लगे है जो हरे रंग के और छोटे पौधे है।

उसके पास में एक ईंटो की मेड़ बनी हुई है।

कॉर्नफ़्लेक्स बिस्किट टॉफ़ी केलोग्स और सूप वगेरा का पैकेट रखा हुआ है ।